ये बहुत बड़ा पार्क है और यह पार्क दिखने में बहुत --

पहाड़ है। उसके नीचे एक छोटी सी --

एक आदमी बात कर रहा है । एक आदमी स्नान करने के लिए आया है ।

नया खुला हुआ है यहाँ पे बहुत सारी बैलून्स से सजाया गया है। यहाँ पे --

और बहुत सुंदर इसका --

यह एक यूको बैंक है। एक ए.टी.एम. --

ये छठ पूजा की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। यहाँ पे औरतें पानी में खड़ी हैं।